ये बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

मंदिर के पास एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस पार्क में बैठने का भी सुविधा दिया गया है।

यहां बहुत सारे बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं।

सारे ट्रैक्टर रंग बिरंगे हैं।

दीवार का रंग भूरा कलर का दिखाई दे रहा है।

इस गाड़ी में दो आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है।

इस दुकान में बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े रखें हुए है।

यहां दो पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सभी महिलाएं योगा कर रही है।

दुकान में बैटरी भी है।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

इस पार्क को चारों तरफ से दीवाल से घेरा गया है।

इस डैम के पास एक छोटा सा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस दुकान में लाइट भी लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं ।

इस सड़क के एक किनारे बहुत सारे ट्रक खड़े है।

होटल के बाहर एक लाल रंग की कुर्सी रखी हुई हैं।